यहाँ पे शादी पार्टी का फंक्शन होगा इसीलिए बहुत ही अच्छे तरह से लाइट से सजाये हुए है।

ग्रे और हरे कलर के सजाए गए है लाइट भी दिखाई दे रहे है इसीलिए बोहोत ही अच्छे दिख रहे है।

पीले कलर से पेंट किए गए है इसमें एक फॉल्ट दिख रहे है जो बिजली के खंभे है।